बेलपत्र अर्पित किया गया है उस फूल से फूल अर्पित किए गए हैं और और भी देवी देवताओं की तस्वीर है आप देख सकते --

आज हम आ चुके है माही शेल्फ हायर कंप्यूटर की दुकान लैपटॉप सेल सर्विस ।

और इसके अंदर रखा हुआ है अंदर एक कूलर है और यहां पर बुक रखी हुई है एक देख सकते हैं आप।

और आप देख सकते हैं यहां पे बिस्तर लगा हुआ है और एक यहां पर कुर्सी रखी गईं है और एक देखिए ये दो रूम दिखाई दे रहा है और --

पानी है और साइड में पौधे लगे हुए हैं जिससे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और यहां का --

बहोत अच्छी दुकान है यहां पे सभी प्रकार की चीजे उपलब्ध है और इसके अंदर इसके ऊपर बाला--

और मेरे दुकान शॉप से दिखाई दे रही है और आप देख सकते है यहाँ पर पतंजलि बाबा है।

देख सकते हैं ये एक बुक सेंटर है हमारे सामने एक तस्वीर है जिसके अंदर बहुत सारे बुक्स रखी गई है।

खान का नाम लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छा नाम है अंदर एक कूलर लगा हुआ है आप देख --

हेलो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने एक तस्वीर है तस्वीर के अंदर दुकान का नाम लिखा हुआ है।

ये इसके अंदर डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है आप देख सकते हैं डॉक्टर हनुमान सिंह कस्वा आप देख सकते हैं दोस्तों यहां --

ये फूल हैं और कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं और ये रेड कलर के हैं बहोत अच्छी दिखाई दे रहे हैं और --

दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने एक तस्वीर है जिसके अंदर --

देख सकते हैं यहां पर सभी प्रकार की चीजें उपलब्ध हैं।

हेलो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने एक तस्वीर है जिसके अंदर सब्जी मंडी दिखाई दे रहे हैं यहां पर सभी प्रकार की --

हेलो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने एक जिम सेंटर है इस तस्वीर में जिम सेंटर दिखाई दे --